एक अंडर कंस्ट्रक्टेड एरिया है और जिसका गेट भी टिन का बना हुआ है और वो घर अभी पूरी तरीके से बना नहीं है और एक साइड पे एक टिन भी लगी हुई है।

एक खेत का इलाका है। जिसमे मिट्टी थोरे-थोरे काट के थोरे-थोरे नीचे के तरफ गिराया गया है और इसमे खुदाई भी चली है। वो दिखाई दे रही है और दूर-दूर तक बस ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखाई दे रहा है ।

ऊपर इसके अ लिखावट की हुई है और सीढ़ियां है और सीढ़ियां के सामने एक टेबल रखा हुआ है जो की बहुत छोटा है और यह मार्बल की सीढ़ियां है और अंदर की गेट जो है बंद है ।

धूप के वजह से यह रोड भी चमक रही है और देखने मे बोहोत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है लेकिन यहाँ पे इसको कौन टांगा वो दिखाई नहीं दे रहा है।

एक जगह है जहाँ पानी साफ़ करके रखा गया है । यहाँ पे लाइटें जल रही हैं और ऊपर से त्रिपाल लगा हुआ है।

बाइक है। बाइक यही है बाइक का कलर ब्लैक है और स्कूल के थोड़े से बाहर जहां पे थोड़े छांव है वहां पे दो बकरियां बैठी हुई हैं और यहाँ पे थोड़े हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं ।

नीचे एक औरत दिखाई दे रही है और ये सीढ़ियों का कलर पूरा ही येल्लो लग रहा है ये लाइट के वजह से और यह बोहोत ही सुंदर डेकोरटेड है ।

यहाँ पे थोड़े से खराब रास्ते भी है | यहा पे दो बाइक भी खरे है और यह पे दूर-दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा है | यह थोरा सा शाम का टाइम है इसलिए इसमे थोर सा सूरज का रोशनी काम परने के वजह से ऐसा दिखाई दे रहा है ।

सड़क के पीछे की तरफ की रास्ता है यहाँ पे एक स्तूप भी दिख रहे हैं जहाँ से गोला-बारूद किया गया था वो बहुत ही पुरानी है यहाँ पे लाइट की तारे भी दिखाई दे रही है और नीचे बहुत ही ज्यादा ग्रीन - ग्रीन हो गया है।

छोटे-छोटे पौधे है जिसमें फूल भी लगे हुए जो की येलो कलर के है और यहाँ पे आस-पास कोई दिखाई नहीं दे रहा है और यह देखने मे बहोत ही सुंदर भी लग रहा है।

होटल है होटल का कलर येलो है और ये दो भागों मे डिवाइडेड है नीचे इस का फिक्स गेट है और एक उस के बहार एक कर पार्क की गई है जो वाट कलर की है और दो साइक मे दो बाइक पार्क की गई है ।